ये स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग नज़र आ रही है।

ये एक जिम दिखाई दे रहा है जिसमें कई सारे जिम एक्ससरसाइज मशीन रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

कई सारे जेंट्स वियर यहाँ पर अवेलेबल हैं।

स्कूल को काफी ज्यादा पुरानी है और इसको काफी बारीक से डिज़ाइन किया गया हैं।

जो स्कूल कॉलेज या गवर्नमेंट --

और एक डैम्प भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे एक ब्लू कलर का ड्रम रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

ऊ गर्ल और बॉयस मिलकर योगा सिख रहे है जो की अपने अपने मेट पर बै बैठे हुए हैं।

लेकिन उसके आस-पास कोई भी पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर लाइट के खम्बे लगे हुए है पीछे पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे है ।

हूँ ज्यादा नंबर है और पीछे विंडो लगी हुई दिखाई दे है पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।